गुफा है। गुफा के अंदर एक महिलाये झुकी हुई हैं। एक जेंट्स बैठा हुआ है। गुफा के बाहर आते ही पेड़ भी है। तीन बन्दे बैठे हुए हैं खड़े हैं। गुफा मे काफी सारे पत्थल दिखाई दे रहे है। ये खतरनाक --

दुकान दिखाई दे रहा है। ये फूट - वूट भी है टेबल भी लगा हुआ है। काउंटर बना हुआ है चेयर भी है।